जो कि दिन के समय में--

किसी मस्जिद के अंदर --

जो रात एवं --

की ली गई तस्वीर है।

जो दिन के समय --

जो दिन के समय --

मछली के बाजारों को --

यह एक कोचिंग सेंटर संस्था की फोटो है जहाँ पर कुछ फेस्टिवल --

ऑटो और अन्य गाड़ियों का--

तीनों एवं एक व्यक्ति की तस्वीर आई है।

आ रहा है यह अभी रात का समय है .

पेट्रोल पंप जिसका नाम--

दिन के समय में व्यक्ति अपने एटीएम से--

बढ़िया सी सैलून की तस्वीर है।

यह एक योगा क्लास है।

कारीगरी की दुकान है जहाँ पर--

फोटो है जहाँ पर दो व्यक्ति अपने बाइक को--

की फोटो है जहाँ पर--

बहुत सारे व्यक्ति अपनी नवाज को--

पढ़ते हैं एवं यहाँ बहुत--

दुकान को दिखाया जा रहा है।

दो बड़े बिल्डिंग --

जहाँ पर कारीगर अपने कामो को--

यह एक तरु आ आश्रम --

पार्क या किसी--

कॉलेज में लगे --

का बैनर लगाया हुआ है जहाँ पर अनेक-अनेक प्रकारों की--

जा रहा है और अगल-बगल हरे भरे--

अनेक-अनेक प्रतीकों कि वस्तुओं को रखा गया है एवं उनमें --

भी रखे हुए हैं।

दिखाया गया है एवं यह--

दिन बहुत सुहाना भी दिखाई --

यह किसी पेट्रोलियम --

बहुत अच्छी ध्यान रखी गई है।

बच्चे फुटबॉल एवं अन क्रिकेट स्पोर्ट --

जिसके अगल-बगल बड़े-बड़े पेर भी लगे हैं।

रेस्टोरेंट की तस्वीर है।

तस्वीर --

है जो दिन के --

इस तस्वीर में एक मस्जिद को दिखाया गया है ।

की तस्वीर है जो कि दिन के समय ली गई है।

एक जिम की है ।

जो कि बहुत बड़े पिक्चर में बनी हुई है जो --

इस तस्वीर में किसी नदी नदी की किनारे की तस्वीर ली गई हैं।

व्यक्तियों के लिए हैं यह दिन के समय में --

बच्चे रंगोली --

बनाई जा रही है ।

एवं क्रेन --

लगे किसी समुंद्र टटिए --

यह तस्वीर एक बाजार में बनी मंदिर की है।

हम्म में दिखती --

दो व्यक्ति हैं जो --

यह एक मार्केट ।